एक कमरा जैसा भी बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे की छे पिलर खड़े हुवे दिखाई दे रहे है सामने एक बैठने के लिए टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है उपर दो तीन लोग बात करते हुए दिखाई--

एक छोटासा ब्रिज भी दिखाई दे रहा है इस पार से उस पार जाने के लिए और बड़ी सी चट्टानों के अंदर बहुत सारे कुछ कलाकार कलाकारों ने अपनी कला कृति दिखाते हुए कुछ बनाया हुआ है वो भी दिख रहा है।

ये सामने एक बडीसी छट्टान दिखाई दे रहा है जिसमे की ऊपर जाने के लिए सिडिया भी लगी है सीडीए के भी रेलिंग भी लगी हुई दिखाई दे रहो है। पहाड़ पे --

यह एक बड़ेसे पत्थर को थोडकर एक मन्दिर बनाया गया है जिसके बाहर दो मूर्तिया लगी हुई दिखाई दे रही है और जीने भी लगी हुई दिखाई दे रहे है।

यह कलाकृति कलाकार ने अपने हाथों से बनाई हुई है एक बड़ी सी फत्थर को काटकर मूर्तियां बनाई हुई दिखाई दे रही है।

यहा एक पत्थर कि चट्टान दिखाई दे रही है जो कि दिखने मे मंदिर जैसी दिखाई दे रही है अंदर एक मूर्ति भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ सामने एक रेलिंग दिखाई दे रही जो की उपर की रास्ता को दिखा रही है बहुत सारे छोटे छोटे चट्टानें पड़ी हुई है और एक है बड़ी चट्टान को बनाया गया अंदर गुफा है।

छोटे-छोटे लाइट के लैम्प लगे हुए दिखाई दे रहे है तीन बड़े-बड़े खंबे दिखाई दे रहे है नीचे एक बस खड़ी हुई नज़र आ रही है।